इस कुछ बन रहा है जिसके काफी सारे पिलर खड़े हुए हैं।

यहां पे काफी लोग बैठे हुए हैं कुर्सियां रखी हुई है और अंदर यहां पे --

यहां पे एक घर बना हुआ है बहोत लंबा लंबे घर बना हुआ है काफी एरिया में ये घर बना हुआ है।

थाली में रखी हुई है और कुछ ऊपर टंगी हुई है काफी सारी थाल थाली में जो रखी हुई है वो पत्ते भी इसमें लगे हुए हैं।

यह एक वेयर हाउस जैसा लग रहा है जो अभी न्यू बन के कंप्लीट हुआ है।

चारो साइड इसमें खिड़कियां दरवाजे लगे हुए हैं सीढ़ी बनी हुई है दोनों साइड और यहां पे--

यहां पे तार वाली बाउंड्री लगी हुई है लगता है नहीं तो चारों साइड छोटे छोटे यहां पेए--

लकड़ियों के खंभे गड़े हुए हैं और पेड़ ही पेड़ हैं यहां पे बहुत सारे पेड़ हैं ये बगीचे जैसे लग रा है।

यत और अंदर लाइटिंग वगैरे बहुत अच्छी जल रही है और एक आदमी यहां पे है।

और दोनों साइड यहां पे सिर्फ जंगल ही जंगल है पहाड़ जंगल है हरे हरे--

रास्ते में यहां दोनों साइड खूब सुंदर फूल लगाए गए हैं और लंबे वाले पेड़ भी यहां पे लगे हुए हैं रास्ते से कुछ लोग आ भी रहे हैं यहां पे--

यह जज मंदिर है चर्च है जहां का जहां से काफी लोग खड़े हुए है बाहर--

यहां पे गुब्बारे लगाए गए है और यहां बाहर काफी लोग जेंट्स महिला खड़े हुए है।

और एक यहां पे वो बगल में एक पोस्टर भी लगा हुआ है।